यह एक बिल्डिंग है और यह बिल्डिंग में अलग-अलग रूम अलग-अलग लोगों को दी गई है जोकि वो अपना दुकान खोलके यहाँ पे चला रहे हैं। इस बिल्डिंग का नाम है --

यह एक चर्च है और यह चर्च में क्रिश्चियन समाज के लोग आ के अपना यहाँ पर प्रेयर करते हैं। बहोत सारे लोग हर रोज आते हैं अपने प्रेयर करने के लिए। हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए।

बोहोत सारे लोग आते हैं और रुकते हैं जो कि बोहोत ही अच्छा सुविधा यहाँ पर दिया गया है। हर किसी को आ के यही होटल में रुकना चाहिए। यहाँ पर एक दिन का रेंट जो है मात्र छह सौ रुपया है। बोहोत ही अच्छा है। अगर आप रूम लेना चाहिएगा तो उसका भी हजार रुपया में उपलब्ध है अवैलबल --

एक पहाड़ पे उपलब्ध है। जो कि यहाँ पे बहोत सारे लोग आते हैं। पूजा करने के लिए और यहाँ पर साथ में ही पास भी बना दिया गया है जिस कारन बहोत सारे सैलानी लोग हर रोज आते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए और आनंद उठाते हैं। हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। बहोत ही अच्छा जगह है।